स्विमिंग पूल के अंदर काफी सारे लोग नहाते हुए भी दिख रहे --

रेस्टोरेंट के अंदर टेबिलें और कुर्सियां भी लगी हुई--